पेशेंट फिलहाल यहां नहीं है और ना ही कोई डॉक्टर है।

जो की संग्रहालय में रखी गई मूर्ति है वो बहोत प्राचीन और बहोत ही महंगी--

सीमेंट की एक दुकान है और उस सीमेंट की दुकान के पीछे एक बड़ा सा टॉवर नजर आ रहा है।

कुछ बसें लगी हुई हैं और कुछ बसें आ रही है अभी स्टैंड पर--

औड़ बस स्टेंड के अगल बगल हमें बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं।

क्लब जिसको बाढ़ कहा जाता है जहां पे सभी लोग कुछ--

यहां पर सरक के किनारे हमें एक ठेले पर--

बहोत सारी पोस्टर्स अगल बगल चिपकाई हुई गई हैं ऊपर लाइट्स और पंखे लगे हैं एक घड़ी भी नजर आ रही है।

अभी कोई भी लोग नहीं आए हैं और यहां पे टेबल कुर्सियां सब कुछ रखी हुई बहुत सुंदर तरह से है।

और दुकान के अंदर से बाहर तक बैग्स ही कभी स्कूल बैग्स तो कभी ट्रॉली बैग्स --

बहोत ही सुंदर सुनहरे कलर की जब धूप पत्तों पर पड़ रही है तो यह और भी सुनहरे दिखाई दे रहे हैं।

और काफी सारे लोग यहां पे स्नान करते हुए हमें दिख रहे हैं।